नमस्कार
netbeans का उपयोग करके guis के निर्माण पर ट्यूटोरियल में स्वागत है
इस tutorial में हम netbeans की सबसे आकर्षक सुविधाओं में से एक को देखेंगे जो इसका gui निर्माता है
gui के निर्माण के लिए netbeans क्या प्रदान करता है
यह आपको प्रदान करता है जो आपने अपने gui को बनाते समय देखा
इसके अलावा यह आपको आपके लेआउट को बनाने के लिए components को खींचने और रखने के लिए एक आसान interface देता है
यह component palette के साथ it है जिसमें पूर्व संस्थापित awt और swing components हैं
हम बस कुछ ही मिनटों में पूर्ण gui application का निर्माण करने के लिए इस शक्तिशाली visual editor का उपयोग करेंगे
इसके लिए मैं एक system का उपयोग कर रही हूँ जिसमें हैं
लिनक्स operating system ऊबुंटू version 1104
और netbeans ide version 711
संस्थापन और आवश्यकताओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया पिछले tutorial को देखें
इस tutorial में हम सीखेंगे
form editor उपयोग करना
सोर्स एडिटर
पैलेट इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टीज विशेषताएँ
event handlers घटना संचालकों को जोड़ना
और अपने application को कंपाइल औऱ रन करना भी
शुरू करते हैं और इस tutorial में एक साधारण account balance application बनाते हैं
इस application के लिए हमें सक्षम होना चाहिए
खाते में credited हुई राशि को input करने में
राशि को खाते से डेबिट करने में
और अंतिम शेषराशि की गणना करने में
हम अपने application को अधिक आकर्षक बनाने के लिए तस्वीर भी जोड़ेंगे
आसान और तेज़ navigation के लिए ऊपर menu bar भी जोड़ेंगे
अब netbeans पर जाएँ और नए project बनाने के साथ शुरू करें
file menu से new project चुनें और java application चुनें फिर next
और अपने project को name दें
मैं अपने project को account balance दूँगी
main class न बनाएँ लेकिन इसे main project के रूप में set करें
finish पर क्लिक करें जो आपके ide में नया project बनाना चाहिए
अब file menu में file पर जाएँ और new file चुनें
categories से swing gui forms चुनें
और file type के अंदर jframe form चुनें
next पर click करें
मैं इसे accountbalance कहूँगी
लेकिन आप इसे अपने इच्छानुसार name दे सकते हैं
एक बार आप finish पर क्लिक करते हैं तो यह आपको मुख्य डिजाइन क्षेत्र में ले जाता है
gui निर्माता के साथ परिचित होते हैं
यहाँ right पर palette है
इसमें पूर्व संस्थापित swing और awt components शामिल हैं
यहाँ palette के नीचे properties window है
यह आपको आपके द्वारा चुने हुए components के properties को दर्शाता है
यहाँ बाईं तरफ navigator या inspector है
जो आपको वह components दिखाता है जो frame में जोड़े गये हैं
यहाँ workspace पर डिजाइन mode में
यहाँ ऊपर source button है
जब आप इस पर click करते हैं यह आपको source code पर ले जाता है
जैसे आप डिजाइन करने के लिए components को जोड़ेंगे
यह समरुपी source code लेता है और इसे यहाँ source के लिए जोडता है
design mode पर वापस जाएँ और देखें कि आज हम किन components का उपयोग करेंगे
हमारे एप्लिकेशन बनाने के लिए
हम palette से कुछ कंपोनेंट्स का उपयोग करेंगे जैसे buttons labels panels tabbed pane आदि
अब palette से swing containers के अंदर tabbedpane चुनें
tabbed pane चुनें और form पर click करें
यह आपको एक tabbed frame देना चाहिए आप इसका अपने mouse से आकार परिवर्तित कर सकते हैं
अब palette पर वापस जाएँ और panel चुनें
और फिर से अपने frame पर click करें
यह आपको एक टैब देना चाहिए
वापस जाएँ औऱ अन्य panel चुनें और फिर से form पर click करें
वह आपको कुल 2 tabs देगा
tab आप text पर double क्लिक करके या text पर rightक्लिक करके और edit text option चुनकर text का now बदल सकते हैं
मैं image के रूप में पहले टेब को कॉल करूँगी और दूसरे टेब का नाम बदलकर balance नाम दूँगी
add palette पर जाएँ और swing controls menu से labels जोडें
swing controls से label चुनें और यहाँ अपने form में इसे जोड़ें
हमे अपने application के लिए 6 labels की आवश्याकता है
अब मैंने अपने form में 6 labels जोड़ दिये हैं
आप उनपर click करके उन्हें स्थान दे सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं
और स्थान बदलने या उन्हें फिर से अलाइन करने के लिए mouse का उपयोग भी कर सकते हैं
अब label पर text बदलने के लिए
आप या तो इस पर double click कर सकते हैं या इस पर right click कर सकते हैं
और edit text option चुन सकते हैं
अब labels का नाम बदलें
मैं सबसे पहले को initial amount नाम दे रही हूँ
दूसरे label को credit amount
तीसरे को debit amount
और चौथे को balance कहूँगी
प्रारंभ में हम initial amount rs 5000 set करेंगे
एक बार हम balance की गणना करते हैं हम इसे इस level पर रख सकते हैं
किंतु अभी के लिए हम इसे stars के रूप में बना देंगे
अब palette पर जाएँ और textfield चुनें और हम credit amount और debit amount के आगे text fields जोड़ेंगे
हमें textfield स्थान को भी खाली छोड़ना चाहिए
मैं text को edit करती हूँ और यहाँ मौजूदा text को हटा देती हूँ
अब mouse का उपयोग करके इसका आकार परिवर्तन करें
एक बार आपने यह किया आप palette पर वापस जा सकते हैं और button चुनें
अपने frame के नीचे button जोड़ें और
आप इस पर right क्लिक करके label बदल सकते हैं
edit text option चुनें और इसे get balance name दें
अब यह हमारा gui है
tab image टेब tab1 पर जाएँ औऱ एक image जोड़ें
ऐसा करने के लिए palette पर वापस जाएँ
औऱ अन्य label चुनें और इसे panel पर रखें
अब palette के नीचे properties window से icon property खोजें और यहाँ दाईं ओर 3 dots पर click करें
icons properties window खुलती है
यहाँ option external image चुनें फिर यहाँ दाईं ओर पर 3 dots पर click करें
और image देखें जिसे आप अपने application के लिए शामिल करना चाहते हैं
मैंने यहाँ image चुन ली है ok पर click करें
mouse का उपयोग करके इसका स्थान बदलें
आप यहाँ इस पर double क्लिक करके label पर text हटा सकते हैं और text को हटाएँ
अब हमने image जोड़ दी है
अपने gui में menu जोड़ते हैं
palette पर जाएँ और swing menu के अंदर menu bar option चुनें
menu bar चुनें और panel के शीर्ष पर click करें
default रूप से यहाँ पहले ही दो menu labels file और edit हैं
edit text पर double click करें और इसे help नाम दें
आप file के अंदर menu भी जोड़ सकते हैं
अब बाईं ओर inspector या navigator में jmenu1 पर rightclick करें
add from palette option चुनें और menu item चुनें
वह menuitem जोड़ना चाहिए
आप इसको exit नाम भी दे सकते हैं
अब हमने file menu के अंदर menu जोड़ दिया है और उस menu item का now भी बदल दिया है
अब हमारा gui अधिक या कम पूरा हो चुका है
अब एक पूर्वावलोकन पर नजर डालते हैं
सबसे ऊपर preview design button पर click करें
अब तक आपने क्या किया है वह उसका पूर्वावलोकन दिखाता है
यहाँ buttons अभी भी काम नहीं करते हैं
लेकिन एक but आपने code में code दिया आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं
पूर्वावलोकन को बंद करें
अब code जोड़ने से पहले input text fields को उचित variable now देते हैं
balance टैब पर जाएँ यहाँ इन text fields को उचित variable names दें
inspector में jtextfield1 पर rightclick करें
change variable name चुनें
variable name को credit amount में बदलें
ok पर click करें
आप यहाँ डिजाइन mode में टेक्स्टफिल्ड पर rightclick भी कर सकते हैं
change variable name चुनें
variable name debitamount में बदलें
ok पर click करें
मैं इस अंतिम label को कॉल करने जा रही हूँ अर्थात resultbalance के रूप में stars टेक्स्टफिल्ड्स
change variable name option फिर से चुनें और variable को resultbalance में बदलें
ok पर click करें
अब application के कार्य के लिए code को देखते हैं
अब यह हमारा सेम्पल code है
मैं creditamount से text
debitamount से text प्राप्त करना चाहती हूँ
balance की गणना करें और आखिरीresultbalance में amount रखें
यहाँ code को copy करें और ide पर वापस जाएँ
अब get balance button पर rightclick करें
option events action और action performed चुनें
यह आपको code के भाग पर ले जायेगा
जहाँ आपने button दबाने पर प्रदर्शित कार्य के लिए code को लिखना या paste करना होगा
copied किये गये code को यहाँ paste करें
code को सेव करें और डिजाइन mode पर वापस जाएँ
add application से बाहर निकलने के लिए code जोडते हैं
menu item exit पर rightclick करें और events action और action performed चुनें
यह source mode पर जाता है और अब हमने application से बाहर निकलने के लिए सफलतापूर्वक code लिखा है
जो system exit 1 होने जा रहा है
अब code को सेव करें और डिजाइन mode पर वापस जाएँ
exit menu item के लिए shortcut भी जोड़ते हैं
यहाँ जो window खुलता है उस पर shortcut option पर doubleclick करें
q और ctrl दबाएँ और ok पर click करें
अब हमने application से बाहर as के लिए keyboard shortcut के रूप में ctrl q set किया है
इसी के साथ हमारा application पूर्ण होता है
अब अपने keyboard पर f6 दबाकर application को रन करें
रन होने के लिए main class पहले ही चयनित है
ok पर click करें
और यह यहाँ है यह हमारा gui है
अब check करें
balance टैब पर जाएँ credit amount राशि rs 300/ प्रविष्ट करें
और debit amount rs 200 प्रविष्ट करें और get balance दबाएँ
यह हमें वर्तमान बकाया राशि देता है
अब application से बाहर आएँ
file menu पर जाऊँगी और exit पर click करूँगी
हम keyboard पर ctrl q दबाकर भी application से बाहर आ सकते हैं
अब application पूर्ण होने के साथ यह नियतकार्य का समय है
एक टेंपरेचर कंवर्टर application बनाएँ
पिछली तरह के tabs होने चाहिए
पहला centigrade से fahrenheit और दूसरा fahrenheit से celsius बदलें
यह एक input टेंपरेचर भी लेना चाहिए
और बदला हुआ टेंपरेचर प्रदर्शित करना चाहिए
इसमें सबसे ऊपर एक menu bar भी होना चाहिए जो file और help options दर्शाता है
और file menu के नीचे application से बाहर an के लिए keyboard shortcut के साथ एक exit item होना चाहिए
मैंने नियतकार्य पहले ही हल कर दिया है
देखिए कि यह कैसा दिखना चाहिए
मैं अपने नियतकार्य को रन करने जा रही हूँ और यह मेरा gui है
अब input टेंपरेचर40 celcius प्रविष्ट करें और get fahrenheit पर click करें
application सही प्रवर्तित output टेंपरेचर देना चाहिए
अब application से बाहर आने के लिए short कीज़ अर्थात ctrl x का उपयोग करें
अतः हम keyboard shortcut के माध्यम से application से सफलतापूर्वक बाहर आ गए हैं
screen पर दिखाए link पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है